इस फोटो में एक गाड़ी है उसके आगे दो हेडलाइट्स है उसमें ग्लस है पीछे पिलर्स है वाल है।

ये फोटो में एक बड़ा सा गार्डन है जिसमें कई प्रकार के फूल हैं गेंदे के फूल हैं येलो कलर के ऑरेंज कलर के उसके चारों तरफ बरे बरे पेर हैं दीवारें हैं लाइट पोल है।

इस घर में चार पिलो है बिस्तर है खिरकी है।

इस फोटो में एक गैराज है जिसमें टायर है बाइक है घर है पेड़ है बरा सा पिलर है पोस्टर है।

इस फोटो में लड़के हैं लड़कियां हैं डांस कर रहे हैं हाथ में फ्लैग है ऊपर लाइट है पीछे का वाल ब्लू कलर का है ऊपर एम_पी लिखा हुआ है नीचे कारपेट है।

ये एक बड़ा सा केप का फोटो है जिसमें बड़े बड़े पत्थर है छोटा पत्थर है एक आदमी खड़ा हुआ है।

दो बॉक्स रेड और वाइट कलर के हैं एक बॉक्स ऑरेंज कलर का है।

बरा सा दीवार है बिल्डिंग्स है।

इस फोटो में रैक है जिसमें बड़ा बड़ा बक्सा रखा हुआ है जिसमें नंबर है डी डबल ज़ीरो फोर फाइव डी डबल ज़ीरो फोर सिक्स डी डबल ज़ीरो नाइन ज़ीरो डी डबल ज़ीरो नाइन वन डाइ नो लिखा हुआ है।

सामने एक घर है नीला कलर का जिसमें स्विच बोर्ड है लोहे का पिलर है सामने नदी है उसके पीछे पहाड़ है एक बोट है।

येह एक वाटर पार्क का फोटो है जिसमें वाटर का राइट् से फूल है बड़े बड़े पेर है।

इस फोटो पे तीन बस है एक वाइट कलर का है।